एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

बारा भी दिख रहा है।

ऊपर में भी दिख रहा है बगल में पेड़ दिख रहा है बड़ा सा हरा कलर का है।

दिख रहा है कुर्सी दिख रहा है।

रोड जैसा दिख रहा है।

इधर साइड में भी लिखा हुआ है।

दीवार में खिड़की दिख रहा है।

ता भी दिख रहा है रोड दिख रहा है।